यह बाल कटिंग की दुकान है।

यहाँ के अमधि में बहोत अच्छी सजावट की गयी है।

यह एक फील्ड है जिसमें बोहोत सारे बच्चे ख दौड़ रहे हैं।